यहां एक कैफे का दृश्य दिखाई दे रहा है।

तथा चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं।

यह मस्जिद का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद में है।

चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक तालाब का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह एक पुलिस स्टेशन का दृश्य दिखाई दे रहा है।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

काले रंग का लोहे का रैक भी दिखाई दे रहा है।

यह दो व्यक्ति का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जमीन पर ढेर सारी मिट्टी भी गिरी हुई है।

यहां कुछ व्यक्तियों का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एवं जमीन पर हरे और लाल रंग की कारपेट भी बिछी हुई है।

यह एक कार का दृश्य दिखाई दे रहा है।